टेलीफ़ोन है एक बॉक्स है पेन है पेपर है स्टेपिलाइजेर है।

एक टूटी कार है एक आदमी दिख रहा है एक रस्सी है बहुत सारी जंजीरे हैं। एक ठेला दिख रहा है बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं। लाइटें जल रही हैं झालर जल रही हैं।

यह एक मंदिर है। बहोत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं थाली रखी हुई है कटोरी रखी है। दिए जल रहे हैं। डोलची रखी हुई है। फूल मालाएँ हैं।

यह एक बड़ी फैक्ट्री है। एक बड़ा रोड है। बहोत बड़ा मैदान है। हरी घास है। बहोत सारी खिड़कियाँ हैं। चार लोग खड़े हुए हैं।

एक बॉक्स रखा हुआ है एक पेन रखा हुआ है फ़ोन रखा हुआ कागज़ है मास्क है एक नीले कलर का बैच है।

यह एक मॉल है यहाँ बहुत सारी लाइटे लगी हुई हैं पोस्टर लगे हुए है एक बोरी रखी हुई है डोलची रखी हुई है।

शीशा लगा हुआ है। फोन रखा है। एक बड़ा पोस्टर लगा है। डम्बल रखे हुए हैं। छोटी बॉल रखी हुई है।

पत्ते लगे हुए हैं। दीवार है। एक बड़ा मैदान है। बड़े खम्बे लगे हुए हैं।

यह एक बैंक है। एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। कांच के दो गेट लगे हुए है। दो गाड़ियां रखी हुई है। एक स्कूटी रखी हुई है। एक छाता लगा हुआ है।

रिक्शे खड़े हुए हैं। बहोत सारी दुकानें हैं। लाइटें लगी हुई हैं। बिजली के खम्बे लगे हुए हैं।